यहां पर एक नदी का किनारा है यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

रस्सी से बांध कर किनारे पर रखा गया है और उ दूसरे किनारे पर बहुत सारे पेड़ हैं सामने की तरफ--

कुछ मेट साइड में रखी हुई भी है।

सामने कुछ रेड और ग्रीन कलर की चेयर रखी है पास मे ही और भी टेबल लगे हुए है।

बिजली के खंबे पर भी कुछ पोस्टर लगे हुए--

आस-पास में बहुत सारे पेड़ हैं।

नीचे की तरफ बहोत सारी घास लगी हुई है और उस बीच में एक टेबल और चार्जर रखी हुई है जो प्लास्टिक के हैं।

यहां पर स्टेट बैंक का एक ए_टी_एम है ए_टी_एम के बाहर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं और इसके बाहर कुछ टीन सेट लगा हुआ है आसपास में कुछ चश्मे की शॉप है।

कुछ पेन रखे हुए हैं और पीछे की तरफ कुछ फोटोस फ्रेमिंग करके लगाई गई है दीवार पर रूम पूरा वाइट है।

यहां पर एक मेडिकल स्टोअर है जिसके सामने एक बाइक खड़ी हैं।

यहां पर मिलन पैलेस के नाम से रिजॉर्ट है। एक जहां पर शादी हो रही है। शादी का स्टेज बना हुआ है।

जिसके सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

यहां पर एक बहुत बड़ी डिजाइनिंग बिल्डिंग बनी हुई है।

जो ब्लू कलर की है और इसके आस पास में बहोत सारे घर बने हुए है।

और सामने की तरफ बहुत सारे कलरफुल पर्दे लगे हुए हैं।

चर्च के नाम से ही सामने की तरफ से बना हुआ है।